कमरे बने हुए हैं और दो तीन टब भी बड़े बड़े रखे हैं।

यहां बहोत से आदमी बैठे हैं जैसे छठ मईया पे पूजा करते है।

यहां बहुत सुंदर वाटिका दिखाई दे रही है और बहुत बड़ा--

बहोत सुंदर नजारा दिख रहा है।

और अलग से कलर सभी नजर आ रहा है।

हरियाणें के थ्री व्हीलर भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पंखा भी लगा हुआ है।

यहां बहोत सुंदर सुंदर कपड़ों की दुकान है।

क्या बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है।

बच्चे खड़े हैं। एक लड़की और दो लड़के उनके पीछे काला काला--